बड़ा आसमान दिख रहा है। यहाँ पे एक बिल्डिंग सी दिख रही है। नीचे एक सूखा सा रोड दिख रहा है। वहीं खिड़की खिड़किये बनी हुई दिख रही हैं जो पीले कलर की पुती हुई हैं।

है जो पतली टहनी का है उसके आस पास छोटी छोटी घास दिख रही है। ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे पानी है।

लाइट दिख रही हैं इसमें बोहत सारे कलर के बुक रखी हुई हैं बोहत सारी अलमारियां बनी हुई हैं और जिसमे कत्थई क-सुरमई कलर से पुता हुआ है और ऊपर लाइटें दिख रही हैं।

यह एक जिम की पिच्चर है जहां पे लड़के एक्सरसाइज करते हुए दिख रहें हैं। एक लड़का मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है एक एक्सरसाइज बेठ के कर रहा है सामने लाइटे लगी हुई हैं।